और इस हाउस का कलर हमे यहाँ पर ऑरेंज दिख रहा है और हमे यहाँ पर दो झंडे भी दिख रहे जो कि ग्रे ऑरेंज कलर के है और हमे यहाँ पर एक बैनर दिख रहा है।

और हमे यहा हमे बहुत बड़ा सा बैनर दिख रहा है जिसके अंदर इंग्लिश मे लिखा हुआ दिख रहा है जिसका नाम ब्लू कलर और रेड कलर मे यहा पर देखने को मिल रहा है।

ऊपर एक बड़ासा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके अंदर काफी सारे लोग खड़े हुए है हमे यहा पर बाइक्स खड़ी हुई दिख रही है।

यहाँ पर हमे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसके अंदर हमे यहा पर इंग्लिश मे इंडियन ऑइल लिखा हुआ दिख रहा है और हमे यहा पर व्हाइट कलर की कार दिख रही है हम यहा पर काफी सारे बैलून्स दिख रहै जोकि व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर --

और हमें यहाँ पर वॉल नजर आ रही है।